हरे कलर के लोग डमरु बजा रहे हैं आसमान दिख रहा है।

यहां बड़े-बड़े स्पीकर दिख रहें हैं स्पीकर पर शर्मा ऑडियो का बोर्ड दिख रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर ऐनक्सी बिल्डिंग का बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है।

पूल की दीवाल नीले रंग में दिख रही है।

ए सी सी सीमेंट के नाम से दुकाने हें।